पे हमें एक दुकान देखने के लिए मिलते हैं जहाँ पे हमें बहुत सारे सामान रखे हुए दिखते है। ऊपर की तरफ एक खंभा लटक रहा है और उसके ऊपर भी बहोत सारे सामान रखे हुए है।

जो कि सफ़ेद रंग से बने हुए है और उसमें लाल नील रंग की रेखा भी खींची हुई है ऊपर की तरफ हमें तीन चार पराठे देखने के लिए मिलते है जो कि पीले रंग के होते है।

जो की सफ़ेद रंग का होता हैं और ऊपर की तरफ छत देखने के लिए मिलती हैं।

यहाँ पे हमें बहुत सारे रंग-बिरंगे कपड़े भी देखने के लिए मिल जाते हैं जोकि एक खंबे से टंगे हुए हैं।

और ये उन्नीस सौ उन पचास से प्रतिष्ठा हुआ था सामने की तरफ हमें कुछ तारे भी लटकते हुए देखने को मिलते है।